और ऊपर फूल की पर्दा है।

इसमें लिखा हुआ है कोको कोला साहू लाइन होटल ।

डैम के किनारे में बहोत सारे पेड़ है।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

बस में लिखा हुआ है टू एक्स टू ए_सी सिल्वर कोच कुंवर लिखा हुआ है।

एक पेड़ नजर आ रहा है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

और बैलून नजर आ रहे--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

ड्रूप के इधर बहुत सारे चप्पल नजर आ रहे है।

उनके ऊपर बहुत सारे बाइक और स्कूटी और बहुत सारे बच्चे हैं।

कुछ लोग खड़े हैं और एक स्टेड बना हुआ है।

और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ब बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है के सी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल ।

पूजा करते हुए नजर आ रहा है।

पिंजड़ा के अंदर एक घर दिखाई दे रहा है घर में गेट और खिड़की दिखाई दे रहे है।

और ए_सी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं।

एक डस्टबिन नजर आ रहा है।

और चेयर्स लगे हैं।

एक बड़ा सा रूम यहां दिख रहे हैं।

लाइटें दिखाई दे रहा है।

एक लाइट नजर आ रहा है।

ये एक ईंट से बनी दीवार नजर आ रही है।

और कोलम नजर आ रहा है छड़ से बनी।

अनार नजर आ रहा है।

संतरा दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में दो ऑटो खड़े हुए हैं।

दो घर दिखाई दे रहे--